यहाँ पर कुछ लाल और कुछ सफ़ेद रंग के फूलों की माला भी लटकी हुई है नीचे की तरफ एक सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई है।

ये एक मंच का फोटो है इस मंच के ऊपर दो तस्वीरें लगी हुई हैं और इस स्टेज को बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ है नीचे फर्श पर हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

ये एक फिटनेस जोन है यहाँ पर ऊंची बिल्डिंग है।

एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है वह गाने बजा रहा है स्टेज भी लगा हुआ है।

यह सैलून की दुकान है एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है उसने काले रंग का कपड़ा लगा रखा है सामने की तरफ कुछ बोतलें भी रखी हुई हैं।

यह मच्छी मार्केट है यहाँ पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है काउंटर पर कुछ मछलियां रखी हुई है नीचे धरती पर कुछ मछलियां रखी हुई हैं नीले रंग की एक बोतल है बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं।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

ये एक गौशाला है ये दो मंजिल की है।

टेंपो खड़ा हुआ हैऑरेंज कलर का।

इन्होंने एक व्यक्ति ने सर पर साफा बांधा हुआ है सामने की तरफ एक बाइक खड़ी हुई है पीछे की तरफ पहाड़ हैं और हरे-हरे पेड़ भी।

ये एक हॉस्पिटल है यहां पर बहुत सारे--

गद्दे के ऊपर हरे रंग की चादर बिछी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज खड़े हुए हैं नीले और सफेद रंग के कुछ लाल रंग की बसें भी खड़ी हुई हैं एक हवाई जहाज उड़ता हुआ नजर आ रहा है।